इस फोटो में गाड़ी नजर आ--

इस फोटो में चीजे नजर आ रही हैं।

इस फोटो में फंक्शन नजर आ र--

इस फोटो में शिवलिंग नजर आ रही है इस फोटो में मंदिर नजर आ र--

इस फोटो में कपड़े नजर आ रहे--